यह सामने एक मकान दिख रहा है जिसमें बलून से गेट बनाया हुआ है आइट साइड में कुछ मोटरसाइकिले खड़ी दिख रही हैं।

बड़ा हॉल दिख रहा है जिसके अंदर में कुछ मैदान जैसा दिख रहा है और कुछ हरे हरे वृक्ष लगे हुए हैं।

यहां दो ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है। यह कोई प्लेटफार्म है और यहां कुछ अ- तीन शेड भी लगे हुए दिख रहे हैं।

हा एक ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है यहाँ से सिगनल भी दिख रहे हैं और वहाँ एक --

और दरवाजे के ऊपर एक शंकर भगवान की मूर्ति --

एक बड़ा स्टेडियम दिख रहा है जहा बहुत सी --

यह एक सामने बांग्ला दिखाई दे रहा है जिसमें ऊपर में कुछ स्टील की ग्रिल लगी दिखाई दे रही है |